यह एक दुकान है। यह दुकान बसंत डेरी फॉर्म है।

और बाबा शिवजी पर यही जल को चडाते हैं।

यह डेरी फार्म में दूध दही पनीर मक्खन जैसी चीजे यह कृष्ना डेरी फार्म में मिलती है।

यह रोड के किनारे में एक पुल बनाया गया है और यह रोड के नीचे में गाड़ी पार्क की जाती है और यह पुल के ऊपर लोग पैदल चलकर पार होते हैं।

यह पुल में काम चल रहा है।

यह एक जगह है। यह जगह में चारो तरफ मगरमच्छ ही दिखाई पड़ते हैं।

यहाँ पर सबको पिंजड़े की अंदर --